और रर ब्लू ब्लू खप पिलर है खम्बे हैं ।

बैंक के बाहर में एस.सी. भी लगी हुई है पीछे टॉवर भी है हरे-भरे पेड़ भी हैं ।

--और दो मिस्त्री है एक मिस्त्री है लाल शर्ट पहना है एक मिस्त्री ब्लू शर्ट पहना हुआ है और लिंगु बम्बू पर चढ़े हुए है काम कर रहे है।

सामने में एक डाला टेम्पू है और एक अम्बेटर अम्बे कार है और एक कार दिखाई दे रही है पेड़ भी हैं ।

और टीन की शीट भी दिखाई दे रही है जो ब्लू रंग मैं--